सामने में कच्ची सड़क दिखाई दे रही है और --

हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

साइकल भी दिखाई दे रही है।

बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

रंग-बिरंगी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

काँच लगा दिखाई दे रहा है और सामने में तो --

नीले रंग की टंकियां दिखाई दे रही है।

टाय रखा दिखाई दे रहा है बाइक खड़ी दिखाई दे रही है और एक सोफे में --

उनमें खिडकियां दिखाई दे रही है और बहुत सारी लकड़ी की बड़ी-बड़ी चेयर दिखाई दे रही है।

कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं दो पंखे दिखाई दे रहे हैं।

टाइल्स दिखाई दे रही है और अ डेकोरेशन के --

उम् सामने में अनारदाना फटाके जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर ढेर सारे टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

हरे रंग का बड़ा-सा पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ गमले रखे दिखाई दे रहे हैं।

तार लगे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो भैंसे दिखाई दे रही है और पानी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे हरे रंग के बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और --

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे में बहोत सारे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटी दिखाई दे रही हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं है --

हं यहां तस्वीर में पत्थर की गुफा दिखाई दे रही है।

फावड़ा दिखाई दे रहा है और गिट्टी भी दिखाई दे रही है।

और सामने में कुछ लोग खड़े --